एक बहोत बड़ी बिल्डिंग भी नजर आ र--

ये तस्वीर एक रेस्टोरेंट की हैं ये बहुत सुंदर और नया है इसमें बहुत सारी लाइटें ल --

ये तस्वीर एक रूम की है।

और उन पर कुछ बिछाया गया है।

ये बोर्ड सफेद और लाल रंग का--